जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि यह एक बस स्टैन्ड है और इस बस स्टैन्ड में कुछ लोग चढ़ रहे है कुछ लोग उतर रहे हैं।

और इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग बाहर की और खड़े हुए है कुछ लोग चल रहे है रोड पर और बहुत सारी यहॉं दुकानें देखने को दिख रही है।

जैसा की हम देख रहे है यहाँ का डेकोरेशन बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।